यह एक ऑफिस और घर का फ़ोटो है | घर के बाहर वेलकम लिखा है और ऑफिस के बाहर ऑफिस लिखा है जो एक जगदंबा लियब्ररी का ऑफिस है जिसमें सेल्फ स्टडी प्वाइंट चौबीस घंटे लिखा है ।

और एक जगह लिखा है बीकानेर वाला जिसका फ्लोर टाइल्स का है और रेड कलर की चेयर्स रखी --